इस बिल्डिंग के ऊपर सफेद रंग है। अंदर की तरफ पीला रंग किया गया है। कुछ खिड़की दरवाज़े बने हुए है। बड़े-बड़े शटर है।

एक इंटरनेट का लगा है एक आंध्रा ए_टी_एम का लगा हुआ है एक एक्सिस बैंक का लगा हुआ है नीचे की तरफ कुछ दुकाने बनी हुई हैं। रोड के ऊपर और गाड़िया खड़ी हुई है खंबे (खंभे) लगे हैं ।

ये कुछ बड़े बड़े लैंप्स लगे हैं। काफी सारे चेयर टेबल्स हैं। एक बड़ा सा काउंटर बना हुआ है जहाँ पर कुछ लोग है। काफी सारी लड़कियाँ साइड में बैठी हुई हैं।

जो कि काफी सुंदर लग रहे हैं कई सारे बड़े-बड़े फूल हैं कुछ गुलाबी लाल आं और सफेद रंग के फूल है यहां पर फोटोशूट हो रहा है छतरिया लगी हुई है बड़े-बड़े कैमरास हैं काफी भीड़ हो रही है।